ये यहाँ दो बाइक है जो की बोहोत अच्छा लग रहा है। देखने में एक बाइक अपाची है। और एक बुलेट जो की हमको अपाची चलाने में अच्छा लगता है और बोहोत लोगो को बोहोत ही अच्छा लगता है अपाची चलाने में हमको भी लगता है बोहोत अच्छा |

ये एक बस स्टैंड है जो की इस रोड में भी एक टेम्पो जा रहा है और टेंपू में बहुत लोग बैठे हुए हैं। टेंपू से बहुत ही अच्छा लगता है जाने में बहुत ही कम पैसे में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं।

ये एक स्कूल है जो की इस स्कूल में बच्चे लोग क्राफ्ट बना रहे हैं चार्ट पेपर का और बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं । बहुत ही मेहनत करके बना रहे हैं । बहुत ही अच्छा क्राफ्ट बना रहे हम । बहुत अच्छा लग रहा है क्राफ्ट देखने में ।

ये एक बहुत ही बड़ा कपड़ा का दुकान है मॉल जो की इस दुकान में हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इस दुकान में खरीदने में हम लोगों को और बहुत लोग आते हैं इस दुकान में खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादे --